और ये बहुत अच्छा कैफे है यहां का लाइटिंग का सुविधा बैठने का सुविधा जाने आने का सुविधा बहुत ही अच्छा खासा है।

यह एक पार्क है जहाँ पर घने घने पेड़ हैं पेड़ पे कुछ फूल भी खिले हुए हैं अ रोड है बैठने वाली सुविधा है अंदर पार्क में।

और बहोत ही अच्छा जगा है घूमने के लिए आप लोग भी आईये और यहाँ घूमिए ।

यह एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के निचे--

यहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है जहाँ बहोत सारे मजदुर बिल्डिंग बना रहे है वे सीमेंट करके उपर से छोड़ दीये है।

या सेलून को जो आदमी है वो हाथ में कुछ लेके इनका --

यहा एक वाला जगा है जहा पे अभी निचे से--

छोटा सा ऑनलाइन बाइक के लिए रोड दिया गया है जहाँ पे भी कुछ आदमी तो नहीं बस गाड़ीयाँ दिख रहे है सभी आदमीया भी काम कर रहे है एकबार--

ए गाड़ी रोड पे है चार चक्का लगा हुआ है और एक औरत है एक बुढ़े आदमी यहाँ पे टहल रहे है और ये रोड बिलकुल खली है।

और यहां पे बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बना के दिए जाते हैं।

उर्दू में लिखेंगे है और ये तिन लम्बा बिल्डिंग है।

यहां बहोत ट्रैफिक लगी रहती है हमेशा यहीं भीड़ भाड वाली जगह बहुत ही भीड़ भाड रखती है हमेशा यहां भीड़ भाड ही रहती है।

यह एक होटल है बहुत ही ल लाजवाब होटल है।

और ये फेशन में अभी ये ट्रेडिंग में ये होटल चलरा है।

यह एक बोहोत अच्छा शानदार जगा है।

यहाँं भगवान का मंदिर है और यहाँं बोहोस भक्तगन यहाँं भगवान को --

ऐसा लेने वालाअ खुला हुआ है और यहा पे--

इस दूकान का नाम है श्री हिंगलाज बुक डिपो --

बड़िया बच्चे पेड़ अपना बना रहे है और में बेट के या सभी को देख रही है।

और अपन देख सकते है यहाँ पे सभी बच्चे बहुत ही मेहनत से अपना वेट काम में लगे हुए है।

यहा एक बहोत ही अच्छा दूकान है यहा पे--

तेजू है यहा एक बहोत अ अच्छे--

यो मस्त है बोहोत ही अच्छे लुके दिखरे इस ट्रेन का--

यहा एक प्रकार का गेट है इसमें खाना मीलियन --

और ये एक बहोत अच्छा प्रकार का अप्प है गेम है।

भगवान का मंदिर है बोहोत अ अच्छा मंदिर है।

यहा पे इस मंदिर के बाहर एक हीरो होंडा बाइक लगा हुआ है जिसे एक आदमी आके मंदिर के गेट पे भी--

इस दूकान के मालिक जो है सो बोहोत ही अच्छे प्रकार के है।

यह एक जक्सन टाइप का रोड है।

और यहा एक --

और यहा पे आप लोग देख सकते है बोहोत सारी गाडी बोहोत सारी भीड़ लही हुई है।

यहाँ एक बहोत सुनसान सा रोड है इस रोड पे आके आप लोग के अच्छा सा--

यह एक प्रकार का कैफे है इस कैफे में आप लोग भी आ के कर सकते हैं जैसे कि अभी कुछ लोग आ के अपना खा रहे हैं बात कर रहे हैं एंजॉयमेंट कर रहे हैं।

यहा एक मस्त कपड़ा दुकान है जिसके बाड़े एक वोचमेन भी है।

दिख रहा है जो उस छावनी में बहुत ही मज़ा आ सकता है इस छावनी में आप लोग भी अपने दोस्त के साथ मज़ा करिए।

गाड़ी लगे हुए हैं जैसे आप लोग को समझ जाइए इसके बगल में कुछ अच्छा खासा जगह है जहां पे बहोत सारे आदमी घूमने आए हैं।